लाइट है ।

ये बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है ।

वो अपने रूम में है ।

वहाँ पे शायद दो महिला है एक --

उसमें कोई इंसान रहता नहीं ।

ये सब्जी का खेती है ।

बहुत ही अच्छा लग रहा है घूमने वाली इसमें ।

ओ बहोत अच्छा लग रहा है हमें गजब बहोत अच्छा है ये।

यह मुझे बहुत अच्छा लग रही है ।